इमारत पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

चित्र मे एक नदी नजर आ रही है बाजु मे बड़े बड़े पत्थर है।

पत्थेरों पर छोटी छोटी घास उगी है अगल बगल पेड़ नजर आ रहे है।

मे एक बड़ी मूर्ति हुई है के पीछे ऐ पर लाइट लगा हुआ है।

अगल बगल बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे है। कई सारे बसे और गाड़ियां लगी हुई है।

नाव पर अलग अलग रंग के झंडे लगाए हुए है दूर छोटे छोटे पर्वत नजर आ रहे है।

चित्र मे एक दुकान नजर आ रही है दुकान के सामने टिन का शेड लगाया हुआ--